यहां पर सामने एक स्कूल है स्कूल के बाहर कुछ लोग--

कुछ गाड़ियां भी खड़ी है आसपास कुछ गमले लगाए गए हैं।

और बाहर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं।

और यहां पर कुछ गाड़ियां भी है।

पर एक फ्रिज भी रखी हुई--

पास कुछ पेड़ लगे हुए हैं और यहां पर--

ये दुकान का दरवाजा कांच का है।

यहां पर एक दुकान है दु--